और इस तस्वीर में ट्रक भी दिखाई दे रहा है और--

तस्वीर में एक पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है।

और उधर इधर कुछ कूड़े भी दिख रहे हैं।

इ इस तस्वीर में बहोत सारा टेबल और एक--

और स्कूल में बच्चा लोग पढ़ भी रहा है देखिए ये टोपी वाला बच्चा का सिर नहीं दिख रहा है।

और ये बहोत बढ़िया शॉपिंग मॉल है।

छोटा सा घर दिख रहा है खपड़ा का उसके पीछे एक दीवाल सा बना है और बहुत बड़ा--

और यह तस्वीर में बच्चे कलरफुल ड्रेस पहने हुए नजर आ रहे हैं।